यह घर है टेक्टर है दो टेक्टर है हां पोस्टर लगी हुई है सड़क है। पेड़ है।

यहां घर है बाइक है और महिलाएं हैं पुरुष है।